यहां पे बहुत सारी मिट्टी है कूड़ा है बीच में गोबर पड़ा हुआ है।

सूखे पेड़ पौधे हैं एक चेयर रखी हुई है।

बहोत सारी मिट्टी है वाइट कलर की टाइल्स है।

नीचे एक फर्नीचर है ये शीशे का कबड बना हुआ है अलमारी है और लोग बैठे--

नीले कलर की कारपेट बिछी है रेड कलर का कारपेट है।

लकड़ी के पंख बने हुए पीछे इसके हरे कलर का है।

छत में वाइट कलर का पेंट हो रखा है यहां पे दो तीन पर्स है सामने दो बॉटल्स र--

दीवार पे रेड कलर की पेंट हो रखी है नीचे कैक्टस का पौधे रखे हुए हैं।

बगल में एक खंभा है पिंक कलर का पेंट हो रखा--

नीचे फर्श पे बहोत सारी मिट्टी है और यहां पे अं पर्दा बना हुआ है हरे कलर का--

बॉडी बना रहे ऊपर ब्लैक कलर का पोस्टर है वर्क लिखा हुआ है नीचे डंबल लटका हुआ है और एक पाइप पड़ा हुआ है।

दो काउंटर बने हुए हैं यहां पे एक आदमी खड़े हो के कपड़े खरीद रहा है।

एक व्हाइट कलर की पीछे बिल्डिंग हैं यहां पे नीले बॉक्स हैं।

दो छोटे छोटे ट्रक है पीछे एक बिल्डिंग है पिंक कलर की और यहां पे लोग बैठे हुए हैं हरे घास--